किसी भी तरह का उपहार यहां कर सकता है।

आज इनको गेस्ट हाउस के रूप में काम में लेते हैं।

यह एक टेबल है जिसके ऊपर सभी तरह की बेचने के लिए चॉकलेट बिस्किट सजाए गए हैं।

व्हीकल लाकर्स के बाहर खड़ी करते हैं फिर सुपर मार्केट में जाके अपनी--

और यह बहुत सुंदर बंगला आपको दिखाई दे रहा है जिसका एक्सटीरियर बहोत सुंदर है जिसमें एक लाइट चमक रही है।

यहां पर लोग आकर अपना हेयर कट --

बहुत सुंदर स्थान है। यह ठंडा भी रहता है।

जीवन का आनंद ले रहे हैं बच्चे खेल रहे हैं।

और पूल में पानी में नहा रहे हैं।

जिस स्विमिंग पूल में पानी भरा हुआ नजर आ रहा है।

यहां पर फसल उगाई जाती है यह खाने के काम आता है।

बिस्किट टोस्ट ब्रेड केक खरीद सकते है यहां जन्मदिन के समान भी मिलते है।